और यह बहुत बड़ा है और यहां पर एक पंखे भी लगे हुए है।

यहां पर दस आदमियां है।

यह एक टेंपो का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

अगल बगल चार लाइट भी है।

यहां पर दो चेयर है रेड कलर का।

यहां पर तीन टेबल भी है वाइट कलर --

यह कोई फोटो बिछाने का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यह एक गार्डेन का तस्वीर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे छोटे से बड़े साइकिल दिखाई दे रहे।

यहां पर दो झंडे भी है।

यहां पर बहोत सारे अच्छे-अच्छे फूल है रेड कलर के फूल है यहां पर बहोत सारे घने-घने पेड़ भी है।

यहां पर बहुत सारे अरुण के आइसक्रीम है।